जेब में हाथ डाले हुए ढेर सारे कंप्यूटर दिख रहे हैं।

जो पेड़ को पकड़ कर खड़ी हुई है और उसका ड्रेस पीले रंग का है।

कुछ सेल्फी टाइप का ले रहा है नीचे कुछ बिछा हुआ लकड़ी का है दीवार लगी हुई है दीवाल काली भी है औ